मुझे यहां एक झंडा दिखाई--

लिफ्ट भी देखने को मिल रही हैं जैसे छोटा मोटा तकिया--

और यह मकान पीले कलर से रंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

जो पीले रंग का टी शर्ट पेहना हुआ है और एक--

और यहां गुब्बारे से सजाया गया है।

यहां एक बल्ब भी नजर आ रहा है।

और कुछ पहाड़ भी नजर आ रहे हैं।